एक खेत है। खेत में बहोत सारे हरे-हरे पेड़ निकले हुए हैं। एक जानवर है मुर्गी जैसा दिख रहा है ब्लैक कलर --

सामने कांटेक्ट नंबर करके नंबर डाला हुआ है। मोबाईल भी बना हुआ है।

उस के हाथ में मोबाइल भी है। साइड में पर्दा डला हुआ है। टाइल्स भी लगी हुई है ब्राउन एंड वाइट कलर की टाइल्स --

एक माली की दुकान है। दुकान में एक माली बैठा हुआ माला बना रहा है। उसके सामने से एक येलो कलर की स्कूल की बस जाती हुई नजर आ रही है।

मछली बाजार है। जमीन पर ब्लू कलर की कारपेट पे बहोत सारी मछलीयाँ र --